यहां पे टाइल्स बिछाए गए हैं वाइट यहां पे कोई नहीं बड़े-बड़े खिड़कियां भी यहां पे देख रहे बहुत सारे--

स्कूल कॉलेजेस दिख रहे हैं यहां पे ब्लू कलर की बिल्डिंग भी दिख रही है यहां पे और यहां पे लाइट खंभे वायरा यहां पे बैठने के लिए कट्टा बनाया गया है बड़ा सा --

यहां पे बैठने के लिए टेबल है यहां वाइट पर्पल पिंक येलो ऑरेंज कलर के फूल खिल रहा है यहां पे कैरी बैग भी पड़ा हुआ है थैला--

यह एक बड़ी सी बिल्डिंग है और यहां पे वॉल की जगह यहां पे स्विमिंग पूल है यहां पे बच्चे तीर रहे हैं बैठने के लिए चेयर भी है यहां पे--

यह एक बड़ी सा स्कूल दिख रहा है आजू बाजू बिल्डिंग है इसके ऊपर--